पिक्चर में मुझे एक रूम दिख रहा है।

रुम रुम में एक लैपतोप दिखाई दे रहा है।

बाइक का नीचे एक टेंट दिख रहा है।

और पांच बाइक दिखाई मिल रहा है।

ये पिक्चर में मुझे ढेर सारा हैंगर दिखाई दे मिल रहा है।

के अंदर एक माइक लगाया हुआ है।

इ पिक्चर मे कुछ नदी दिखाई मिल रहा है।

वॉल के अंदर एक घर दिख रहा है।

एक लड़का कपड़ा खोल के खड़ा रहा है ब्लैक कलर का कपड़ा पहन के--

ये पिक्चर में मुझे दो घर दिख रहा है।

और ऊपर में एक फैन दिख रहा है।